जिसके अंदर कैमरा से देख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे फूल लगाए गए हैं।

बहुत सारी कुर्सियां भी लगी हुई है।

और बिरयानी में दो चम्मच भी रखे गए हैं।

रोड के साइड में एक कार लगा हुआ है जो की वाइट कलर का है।

और व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक लाइट लगा हुआ है।

इस होंडा शोरूम में बहुत सारे स्कूटी लगाए हुए हैं।

एक जाली जैसा कुछ लगाया गया है।

यहां पे पंखे लगे हुए हैं और लाइट लगी हुई है।

यहां पे गार्डन में टेंट लगाए गए हैं।

फर्श के साइड में दीवाल है जोकि पीले कलर का है।

एक बाक्स में माऊस रखा हुआ है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि एक कपड़ा दुकान है सामने जिस कपड़े दुकान का नाम संगिनी क्रिएशन है।

टायर के साइड में जाली लगाया हुआ है।

ऊपर पीले कलर का और पिंक कलर का फूल सजाया गया है।

नीचे हता दिया गया है।

हत्थी के साइड में एक चंपा कल है।

इस फोतो में दिखाया गया है कि एक बड़ा सा मशीन है।